पैजामा पहना हुआ हैं बूढ़ा आदमी बहोत ही मेहनत से इस इस बड़ी चीज को उठा रहा हैं।

यहाँ एक बहुत ही बड़ा रेस्टुरेंट है यह रेस्टुरेंट में बहुत अच्छी टर्की चीजे मिलते है इस रेस्टुरेंट के बाहर बहोत सारी गाड़िया भी खड़ी हुई है।

एक गाड़ी का नंबर जो की फोर फाइव जीरो सेवन एट लिख हुआ है।

यहाँ एक बहोत ही बड़ा मॉल है यहाँ पर एक लिफ्ट भी है यहाँ पर और भी लोग लिफ्ट पर चढ़ कर दूसरे तली पर जा रही हैं।

यह रथ बहोत ही भारी है ऊपर कले के पते से रथ को बांधा भी गया हुआ दिखाई पड़ रहा है।